उस चिलने का काफी सारी मशीनस रखी हुई हैं।

और ऊपर एक वॉल वाला पेन भी लगा हुआ है।

जैसे कि शैंपू टॉफीस हेयर ऑयल और काफी सारी चीजें--

फाउंटेन का नीचे वॉल येलो कलर का है।

मुझे इस पिक्चर में एक रस्ता दिखाई दे रहा है।

उस रोड के बीच में एक डिवाइडर भी लगा हुआ है।

ऊपर सूरज की तेज रोशनी भी आ रही है।